यहाँ एक घर है उसमे दो दरवाजे हैं जो काले कलर के दिख रहे हैं घर मेहंदी कलर का दिख रहा है आगे की जगह अभी मेहंदी कलर की दिख रहे दो पत्ते खींचे हुए हैं जो गुलाबी कलर के दिख रहे हैं।

यहाँ छत डल रहा है यहाँ बहुत से तारे ए ए ए है और उसके पिछे खेत है और बहुत से पेड़-पौधे दिख रहे है जो हरे कलर के दिखाई दे रहे...... है।

यहाँ एक जंगल हे जिसमे बहुत सारा वृक्ष दिख रहे हैं।

यहाँ एक दुकान हैं उस दुकान के ऊपर लिखा हैं तुम स्त्री--

यहाँ चट्टाने है कुछ पत्थर है जो काले कलर के दिख रहे है।

और आइट साइट कुछ हर्रे से पेड़ पौधे है और--